मुझे यहां काले रंग का गाय दिखाई दे रहा है जो घास खा रहा है।

और मुझे गेट के बाहर में बहोत सारे प्लांट्स दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर लंबा सा टेबल दिख रहा है जिसके ऊपर में कंप्यूटर रखा हुआ है और लैपटॉप भी रखा हुआ है।

यहां मुझे खिड़की में ब्लू कलर का ग्रिल भी लगाया हुआ नजर आ रहा है।

और यहां मुझे बच्चों का खेलने का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे लोग बैठ के खेल रहे हैं।

पीछे मुझे पेट्रोल पंप का बाथरूम दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे आगे में ब्लू कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

फोटो के अंदर में मुझे एक आदमी और दो औरत बैठा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में ब्लू कलर की शर्ट पहनती हुई आदमी दिखाई दे रही है।

और यहां पर मुझे कार्टून के अंदर सामान रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

पीछे एक आदमी लाल कलर की शर्ट पहने हुए भी खड़ा हुआ दिख रहा हैं।

मुझे यह पर एक कुत्ता जमीन पर सोवा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

पहाड़ और जंगल ही दिखाई दे रहा है नीचे मुझे थोड़ा सा पानी और पत्थर भी दिख रहा--

मुझे अंदर में बहुत सारे कपड़े सुखाए हुए दिख रहा है बाहर में मुझे तीन से बना हुआ--